घर दिख रहा है जो येलो कलर से पेंटिंग किया गया हैयहां पर आसमान दिख रहा है जो वाइट कलर का है।

यहां पर घर सब दिख रहा है सा दिख रहा है बच्चा सब दिख रहा है कॉपी किताब कलम लीड सब दिख रहा है।

लंग पंखा सब दिख रहा हैयहां पर लाइट सब दिख रहा है यहा पर बल्ब बढ़ते हुए दिख रहा है यहाँ पर--

पौधा सब दिख रहा है घर दिख रहा है फूस दिख रहा है।

मोटरसाइकिल दिख रहा है न्यू लिखा दिख रहा है।

यहाँ पर घर दिख रहा है यहां पर नवीन के पापा दिख रहा है हलवाई मशीन बना है सीसा दिख रहा है एसी दिख रहा है।

इसमें बॉल दिख रहा है इसमें गहना गुड़िया सब दिख रहा है इस पर बाय लिखा हुआ दिख रहा है वेलकम दिख रहा है यहां पर बिहार आर लिखा हुआ दिख रहा है इसमें--

शीशा सब लगा हुआ दिख रहा है बोर बढ़ते हुए दिख रहा है घर से दिख रहा है यहां पर पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है यहां प--

कुछ और बंगाली भाषा में लिखा हुआ दिख रहा है पत्ता सब दिख रहा है यहाँ पर घर दिख रहा है यहां पर किरण दिख रहा है यहां पर घर दिख रहा है किरण के --

पानी दिख रहा है दूर दूर तक पानी वाला दिख रहा है इसमान दिख रहा हैजो ब्लू कलर का है इसमें--

पुल दिख रहा है बड़ा-बड़ा अपन नाव चलते हुए दिख रहा है नाव का --

फोटो लगा है सब में शीशा व लगा हुआ दिख रहा है खिरकी सब दिख रहा है।

कोट पैंट सब रखा हुआ दिख रहा है जींस दिख रहा है ब-बोरा सा दिख रहा है लोहा दिख रहा है स्वेटर दिख रहा है।

घर दिख रहा है जिसमें खिड़की भी दिख रहा है गेट लगा हुआ दिख रहा है।

कुर्सी दिख रहा है एक यहाँ पर काउंटर दिख रहा है वाइट कलर का इसमें चेयर लगा हुआ दिख रहा है।

कांच दिख रहा है टाइल्स लगा हुआ दिख रहा है घर में--

कभी मैं ब्लैक कलर का चका लगा दिख रहा है। मक्का पर मोटरसाइकिल दिख रहा है। कोई बाग दिख रहा है। हम तो आसमान दिख रहा है जो वाइट कलर का है।

यहां पे एक लगा हुआ दिख रहा है जो वाइट कलर का लिखा हुआ है।

यहां पर घर दिख रहा है यहा पर शीशा सब दिख रहा है यहा पर--

घोरा दिख रहा है घोरा पास में बैठा हुआ दिख रहा है जिसका पुतला बनाया हुआ है।

यह जो लोहा में छेद करते हुए दिख रहा है दिख रहा हैपंखा दिख--

और यह वाला दिख रहा है दिख रहा है --

पानी का बोतल दिख रहा है मोटर साइकिल दो-दो दिख रहा है।

दिख रहा है इसमें पौधा सब दिख रहा है पौधा के पीछे--

एक मैदान है जिस पे हरा हरा घास सब दिख रहा है उस पे मकान सब दिख रहा है बहोत बड़ा--

व्हाइट कलर का यहां प खिड़की लगा हुआ दिख रहा है व--

यहाँ पर रेड कलर का खुर्सी लगा हुआ है बहुत सारा यहाँ पर आदमी--

लेडीज सब बैठा हुआ दिख रहा है यहां पर दिख रहा है।

एक और पंडाल लगा म--मैदान में हरा-हरा घास दिख रहा है।

ईटा सब दिख रहा है यहाँ पर घर सब दिख रहा है ईटा बोहोत सारा दिख रहा है दिख रहा है।

यहां पे घर एक गो दिख रहा है बड़ा सा यहां पर--

इस काटाते हुए दिख रहा है आपको कुर्सी लगा हुआ दिख र--

यह एक बड़ा सा दुकान है इसमें बाल बढ़ते हुए दिख रहा है फोटो दिख लहा --

पंखा दिख रहा हैआदमी सब खड़ा हुआ दिख रहा हैपक्का--

रेड कलर का येलो कलर का दिख रहा है वाइट कलर का फूल दिख रहा --

पानी में सामान रखा हुआ दिख रहा है जो कार्टून दिख रहा है।